तस्वीर एक जिम की है और जिम में दो तीन खिड़किया जोकि उसमे परदे लगे हुए है।

तस्वीर एक ऑफिस की है जिसमे कई सारी कुर्सियां भी रखी हुई है और ऐकी-और खिड़की के सामने एक आर_ओ भी लगा हुआ है।

पुला की है और पुला के सामने एक बड़ी कच्ची रोड भी है और पुला भी तार भी लगी हुई है और पुल्ला पे कई सारे लोगो भी खड़े है और नीचे में नहर जैसा लगाया हुआ है।

ये तस्वीर एक दुकान की है जिसमें काफी सारे बाइक्स रखे हुए हैं।

और जो की यहाँ पे बाइक स्कूटी साइकिल वगेरा रखी हुई है और यहाँ यहाँ पे काफी सारे लोगो की भीड़ भी है।

ओ इसमें एक मशीन भी लग-रखी हुई है जोकि नीचे ब्लैक कलर से कलर की हुई है और और बड़ा फील्ड भी है। इसमें--